सेफ़्टी के लिए हेलमेट लगालेवन उधर दुकान खुला है। ढेर सारे बाइक हुए।

वह चीज हये। उधर उधर नदी हवे। नदी में पानी हवे।

यहां पे मधुबन मलिकपुर गाजीपुर के यहां पर साइकिल रिपेयरिंग --

ये रोड होवे जिसमे दुकान होवे बोहोत सारी घर होवे --